इस चित्र में हम एक कांटे नुमा आकृति को देख रहे हैं जो नीचे पाइप से ऊपर की ओर कांटे नुमा आकृति बनी हुई--

इस चित्र में हम एक हिताची का कुछ सरवर फॉर्म देख रहे हाँ यहाँ पर हिताची के इलेक्ट्रिक पॉइंट का एक बॉक्स दिख रहा हैं।

किनारे मिट्टिया दिख रही है कुछ साइन बोर्ड दिख रहे है एक कार भी दिखा रही है रोड भी दिख रही है इलेक्ट्रिक तार दिख रही है।

कुछ रोड के किनारे दिख रहे हें कुछ बिच में दिख रहे हैं।

उसके भी चारो तरफ छोटे छोटे पैर पोधे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक पार्क को देख रहे हैं पार्क को बहुत प्यारा से सजाया गया है।

बच्चो के खेलने के लिए छोल्ले टाइप का बनाया गया है छोल्ले रंग बिरंगे कलर के दिख रहे है ।

ये एक सफ़ेद आकृति में बनी हुई हे बाहर एक गेट भी दिख रहा हें।

इस चित्र में हम एक इसाइओ की मंदिर की चित्र देख रहे है।

मंदिर के चारो ओर घने काले काले बादल दिख रहे है किनारे हलके हलके पेढ पौधे दिख रहे है बिच में काली मिट्ठी दिख रही है.

किनारे एक ऑटो खड़ी हुई है ऑटो के बगल में एक बाइक है बाइक में एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसके कांच का शीशा दीखा --

इस चित्र में हमें एक सिनेटरी की दुकान को देख रहे है इस दुकान में टॉयलेट सीट रखी हुई है।

दोनों तरफ वाश बेसन भी दिख रहा है ऊपर साइड हा--

चार सफेद कलर के सी_सी_टी_वी कैमरे हैं उसके बगल में कुछ टूल्स भी रखे हुए हैं।

कैमरों के नीचे एक चद्दर बिछाई गई है बगल में डी _बी _आर भी दिख रहा है।

पीछे साइड पेड़ भी दिख रहा हैं दीवाल के पिलर में सफ़ेद लाइट दिख रही हैं किनारे साइड खिड़की भी दिख रही हैं।

इस चित्र में हम एक रेस्टोरेंट को देख रहे हैं रेस्टोरेंट में टेबिल लगी हुई है टेबिल के साथ काली कुर्सियां दिख रही है कुर्सियों में कुछ स्टीकर भी लगे हुए हैं।

बाहर से रोड के नजारा भी दिख रहा है फोर व्हीलर और बड़ी गाड़ियां भी दिख रहे।

ऊपर सफ़ेद आसमान दिख रहा है बीच में छोटा सा एक पेड़ का पौधा दिख रहा है।

इनमें कार्टून में कुछ ल काले कलर से लिखा हुवा हैं।

सभी कार्टून रस्सी से बंधे हुए है किनारे एक नील कलर का दरवाजा भी दिख रहा है।

किनारे पेड़ पोधे दिख रहे हे पेड़ पोधे के बगल में--

गिटार की बगल में एक फोटो फ्रेम लगी हुई है फोटो फ्रेम में कुछ चित्र भी दिख रहा है।